बोहोत बोहोत आदमी है कस्टमर भी ज्यादा है| बाइक है।

बहुत स बहुत है एंड देख सकते है कार हौंडा है सामान ऊपर बनता है।

टेबुल वेबुल है| आदमी जो है वह पर खाना बट रहा है| खाना खा रहे है| पंडाल सजावट हो रहा है।

वहा पे खाना वाना बटा रहा है| वहा फल प्लेट उठके खाना लेके खाना लेके यहाँ पे टेबल खुर्सी लगा हुआ। खुर्सी पे बैठ के सब खाते बतीया रहे हैं। लाइट लागल लाइट पंखा लगा हुआ हैं।

देखिये एक पीछे आदमी जा रहा हैं शालगिल मैं शालगिल में एक कमंडल का टेंग हुआ हैं हरियल कलर का पेड़ हैं घर हैं बोहोत बड़ा पेड़ पौधा लगा हुआ हैं।

देखिये सात आदमी हैं सात आदमी सब एक हुआ हैंएम् वाइट शर्ट वाइट कुर्ता वाइट टी--

छोटे छोटे फोटो हैं| बोहोत फोटो हैं| पेड लगा हुआ हैं| घोडा (कोई धो रहा है आशीर्वाद दे रहा है गो लग रहा हैं।

देखिए पोस्टर लगा पोस्टर में केश का अथि केश का डिजाइन है यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ हुआ है अथि पिंक शर्ट पहना हुआ है जींस काला जींस है।

एक लड़की एक लड़की लाल टिकनी है साडी में डांस कर रही है| कमर में बाली पहने हुई हैं।